मस्जिद के बाहर भी एक गुंम्बद सा दिख रहा है और नीचे बहुत सारे जगह खाली पड़े दिख रहें हैं और जिसमें टाइल्स मार्बल्स लगे हैं और मार्बल्स ब्लैक एंड वाइट लगे हैं।

यह एक क्रिकेट का मैदान दिख रहा है जिसमे तीन विकेटे दिख रही है दो गुलिया दिख रही है और सामने में भी तीन विकेटे और दो गुलिया दिख रही है।

एक महिला एक पोडियम पर खड़ी है जो की येलो कलर की है और उसकी सीढ़ियाँ ग्रीन कलर की है।